एक पेट्रोल पास के पास गाड़ी है जहाँ वो पेट्रोल भर रहा है दो कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

यहाँ पर एक बैंक है और जो बैंक है वो कैनेरा बैंक --

टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है प्लेट काली है और इसमें एक चम्मच और एक फोग रखा हुआ हैं ।

लाइट जल रही है ऊपर चेक्स का शेप बना हुआ है।

पीछे ईशु भगवान जी है जहाँ पर एक वाइट बल्ब जल रहा हैं।

कुछ बड़ी लाइट भी लगी है सफेद बल्फ --

यहाँ पर एक मेडिकल है और मेडिकल में काफी सारी दवाई गोली रखी हुई है।

अ चॉक और सीमेंट के बिम्ब बने हुहे है जहा से रास्ता है निकलने के लिए--

जिससे शिव जी के पास डमरू बजाया जाता है वो डमरू हैं।

सामने एक बैंक और ऐ. टी. एम दिखाई दे रहा है ऐ. टी. एम के अन्दर--

यहाँ पर एक कपडे का दुकान है बड़ा सा शोरूम भी बोल सकते है जिसे जहाँ पे --

यहाँ पर एक सुपरवाइजर खड़ा हुआ है जिसने हरे कलर की जैकेट पहनी हुई हैं।

बस की वहाँ पे कुछ पैसेंजर बैठे हुए है जो खुली हुई है।

और जो मल्टी है उसपे जगह -जगह काँच लगे हुए है जो चोकोर डिज़ाइन के दिखाई दे रहे हैं ।